हम देख पा रहे है की ये चिल्ड्रन पार्क है हम को लग रहा है चिल्ड्रन पार्क ही है और देखिये कितनी सुंदर-सुंदर सजाये हुए और खेलने के बहुत सारा चीज है और --

बहुत ही सुन्दर जगह है और यहाँ की देखिये पेड़ उधर दुर-दुर तक दिख रहे है।

--ब छत रहे है हो--